मुझे इस कमरे में एक आदमी नजर आ रहा है।

बाकी बिल्डिंग भी है जिन पर हल्का सा जंग भी चढ़ गया है।

इस बिल्डिंग मे निशान नाम की कंपनी अपना काम--